यहाँ भी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसकी दीवाल का कलर वाइट पिंक है और यहाँ पे रोड भी बना हुआ है और कुछ बोर्ड वगेरा --

पे रोड बना हुआ है जिसके ऊपर कुछ लोग चलते हुई दिखाई दे रहे हैं और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है | इसके नीचे जमीन भी दिखाई दे रही --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

यहाँ पे रोड दिखाई दे रहा है और एक टाइप का बना हुआ है।

पे गेट भी लगा हुआ है जिसमें काँच लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे टेबल और चेयर रखी हुई है।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसके दीवार का कलर वाइट है और यहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं जिनका कलर वाइट --

पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसकी दीवाल का कलर वाइट है और यहाँ पे बोहोत सारी एक्सरसाइज की मशीने भी र --

यहाँ पे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें घास उगी हुई है और कुछ पेड़-पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसपे दीवार का कलर वाइट और रेड है | यहाँ पे बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ है जिसका कलर ब्लैक है | यहाँ पे लाइट --